ब्यूटीफुल है बोहोत ही ज्यादा ब्यूटीफुल --

और कुछ काम कर रहे हैं ये और कट्टे रखे हुए है प्लास्टिक के कट्टे।

जोकि जा रहा है इसके ऊपर से और बगल में रिवर के बगल में पेड़ भी खड़े हुए हैं।